और एक लाल कलर का एक काला कलर का है ऊपर में ए.सी. भी है छत ग्रीन कलर का है और साबुन सब भी है।

जोके चार चक्का गाड़ी का बोलेरो स्कॉर्पियो कार ए सब का टायर मिलता है यहा पे और मोटरसाइकल भी खड़ी है।